पीछे एक दीवारहै येल्लो कलर की जिसपर काई लगी हुई है नीचे एक टेबल है सिल्वर कलर की जिसपर अह छोटी छोटी बिंदी लगी हुई है शायद से एक पाइप दिख रहा है और उसमे एक नल दिखा रहा--

और पीछे एक अह एम स्टेच्यु पीछे एक अ चोकलेटी कलर का कुछ प्रिंट बना हुआ है।

ओ चारों तरफ पानी है और एक बगुला है जो कि उसमें एक चोच दे रहा है।

अह हाँल है जिसमे एक गैया है जो की ब्लॅक और व्हाइट कलर की गैया है जीसपर लाइट कलर का एक अह रस्सी है जिस्से वो बंधी हुई है बन नीचे घास है जिस मे है जिसमे कुछ लोसन रखा हुआ है पीछे दीवाल है।

के शर्ट मे एक आदमी है जिसके हात दिख रहे है जो मिर्चों कों हात लगते हुए तोड़ रहा है और कुछ मिर्चो मे बीज है। पत--

थोड़ासा पर्वत अह पहाड़ टाइप मे दिख रहा है। उसमे छोटी छोटी दुब है। यहाँ पर कुछ सामने सुकी सुकी दुब बगल सी कुछ गिट्टिया रखी हुई है। कुछ--